इस चित्र में एक कंट्रक्शन साइड का चित्र लिया गया है।

लेबर गमला में ईंटा लेके जा रहा है।

यह चित्र एक किराना दुकान का चित्र है।

यह चित्र टोटो स्टैंड का चित्र है |